यहां पर काफी सारी बिल्डिंग्स है जो कई फ्लोर्स की बनी हुई है और वहा पर सामने ही पार्किंग भी है जहा पर कई सारी गाडियां खड़ी हुई है।

यहां पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है जिसके आगे पटरिया है ट्रेन है की और पीछे की साइड एक बिल्डिंग बनी हुई जिसके ऊपर दो टंकिया रखी मिलेगी

आसमान पर बादल भी है पहाड़ पर पेड़ भी लगे है पौधे भी है जो हरे भरे है कुछ पहाड़ हरे भरे दिखाई दे रहे है तो कुछ पहाड़ सादा से मुरझाए हुए

यहाँ पर एक घर बना हुआ है जो येलो कलर का पेंट है जिसे और उसमे कुछ ऑरेंज कलर का भी पेंट है उसके चारो और एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है

यहाँ पे तीन बाइसिकल खड़ी हुई है जो अलग अलग कलर की है।

यहां पर एक पहाड़ है और उसके पास कई पेड़ और सामने काफी सारी झारिया है जिनपे हरी पत्तियां है कुछ सुखी हुई है कुछ हरी है|

यहाँ पर एक काफी बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड के कॉर्नर पर एक मकान बना हुआ है और ग्राउंड में काफी सरे खंभे भी लगे हुए है|

यहाँ पर एक काफी बड़ी बिल्डिंग बानी हुई है|